इस चित्र में हमें लड़कियां और महिलायें को सांस्कृति --

और घर भी काफी अच्छा सा कलर का मतलब बनाया है ऐसा नज़ारा --

पेंटिंग प्रेस की दुकान सामने नजर आ रही है और आजू-बाजू भी --

शांत वातावरण और काफी हरियाली है इसमें ऐसा नजर आ रहा है।

और साइड में वाहन जैसा पड़ा हो पीले रंग का ऐसा भी नजर --

और फूटा हुआ ब्रिज भी इसके पास है ऐसा हमे इस रेलवे के चित्र मे नजर आ रहा है।

और पब्लिक भी काफी है महिलाये और पुरुषें कुछ काम के लिए खड़े हुए --